इसके पास आस -पास हमें थोड़े पेड़ भी दिखाई दे रहें और कुछ स्कूटर्स भी खड़े हुए हैं।

खुला सा खेत हैं। यहाँ पर दो चार लोग भी खड़े हुए हैं और पेड़ भी हैं और सनसेट हो रहा है।